और गाते में भी कुछ सामान भरा हैं।

कुछ गोल गोल सा चिपकाया गया है मिट्टी जेसे लाइटे है लाइट जल रही है फुक्स पिली कलर की--

इस रूम में ट्रे में कुछ कप दो कप में चाय वगैरा हैं नाश्ता--

रूम में पैन्टिन्ग वगेरा है मुसियम टाइप का रूम है टेबल पे पेपर रखा गया है।

और वो शीशे में प्लांट है पेंटिंग दो तीन टंगी हुई है पुरानी पेंटिंग है।

ब्लैक कलर की लोहे की बाउंड्री लगी है और तुरंत लाइटें दिख रही हैं पेड़ पौधे भी--

ये चिनकारी स शक्तिन--

पोस्टर लगा हुआ हे बास वोश रखा हुआ हें निचे--